और अलमीराज् वगैरा पड़ी हुई है। मिरर वाडिये मे ये अलमीराज् की जो है पिक्चर लगी हुई है और डायनिंग टेबल मतलब हर टाइप का फर्नीचर पड़ा हुआ है।

ये एक डी जे के स्टेज की पिक्चर है जहां पे लाइटें लोइटें लगी हुई है और सामने बोर्ड लगा हुआ है जहां पे बहुत सारी लाइट्स हैं शैडो पड़ रही है।

और बहुत नीचरे नेचुरल सा व्यू आ रहा है सामने बहुत सारी माउंटेंस भी हैं।

और ड्रार्स लगे हुए हैं सा मतलब बहोत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं एक ड्रार्स में--

और वहां पे बाहर बहुत सारी व्हीकल्स खड़े हैं उसके पास भी शॉप है।

बाहर एक ग्राउंड बजी हुई है जहां पे बहोत लोग है जो खेल रहे हैं कुछ बैठे हुए हैं देख रहे हैं।